फुल है इसमें हरी हरी पत्तियां है पीछे की तरफ कुछ शोपीस का हरा हरा पेड़ नजर आ रहा है कुछ हरी हरी घास भी।

नीचे की तरफ गुलाबी और सफेद रंग के बैलून से एक दरवाजा बना हुआ है।

शीशे की सेल्फ लगी हुईं हैं और साइड में शोपीस भी--

बाहर की तरफ कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं इन पर जो गद्दियां हैं वे लाल रंग की हैं।

उसके अंदर लाइट जल रही है और बहुत सारे जानवर हैं नीचे की तरफ छोटे-छोटे बाहर की तरफ बहुत हरे-हरे ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं और कुछ मिट्टी सी भी पड़ी हुई है।